पुल ही के सहायता से हमारी गाड़ियां एक जगह से दुसरे जगह जाती है।

आस-पास बहुत से झोपड़ियां है नीचे पानी है इते हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।

यहां पे ढलाई का काम हो रहा है आस-पास मिट्टी भी खुदाया गया है।

सैनिक साइकिल स्टोर लिखा हुआ है।

स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट रहता हैं।

आस-पास एक फोटो स्टूडियो भी है।

इस तस्वीर में एक आंद्रा बैंक है।

यहां बहुत सारे वर्कर अपना काम कर रहे हैं बैंक का।

अ ये आदमी उन बच्चे को यह बिस्किट बाटेगा।

जिन्होंने हाथ मे मटका रखा हुआ है।

टर एक कुत्ते का इलाज कर रहे है।

कुत्ता एक वफादार जानवर होता है।

ओर ग्रे ये जाल के पीछे है इसके आस-पास बहोत से पेड़ भी हैं।

इस तस्वीर मे एक दुर्गा जी की मूर्ती नजर आ रही है आस-पास बहोत से भी मूर्ती है।